तोंप दिखाई दे रहे हैं जहां पर की कई दुकांने आप लोगो नजर आ जाएँगी सारे दुकानों पे उतना ही भीड़ नजर आ रहा है सारे व्यक्ति यहां पर

लोगो दिखाई दे रहा है या तो ये स्कूल है या तो ये चर्च प्रतीत पड़ता है।

इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि सामने में एक कार खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है की जो की इनोवा कार है।

ये काफी शानदार नजारा आप लोगो को दिखाई दे रहा होगा जो की एक झरने का है कि ऊपर से पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है ओर काफी पहाड़ों का--

इस तस्वीर में आप लोग को एक पीछे की ओर मंदिर दिखाई दे रहा है होगा और ये व्यक्ति आपको फोटो खिचाते हुए मंदिर--

इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि एक - एक स्टेज शो दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको म्यूजिशियन यहाँ पर अपना --

नोट्स लिखते हुए नजर आ रहे हैं और एक साइड आपको गर्ल्स बैठी हुई नजर आ रही है और एक साइड बॉयज बैठे हुए नजर आ रहे होंगे।

तो इस तस्वीर में आप लोग देख सकते है कि ये किसी फल शॉप का तस्वीर आप लोगों को नज़र दूकान नज़र आ रहा होगा--

और अलग-अलग प्रकार के आपको फल रखा हुआ नज़र आ रहा होगा।

तो इस तस्वीर मे आपलोग देख सकते है की एक जो व्यक्ति है वो अपना परचार करता हुआ नज़र आ रहा है जो की एक--

ये तस्वीर किसी एक फंशन का आपलोगों दिखाई दे रहा होगा जो की स्कूल फंशन नया अदर फंशन --

और पीछे किसी लोगो का--

टोटो चलता है और बहुत सारे यहाँ पर व्यक्ति आप लोग को बैग लेगे हुए नज़र आ रहे होंगे।

और काफी लोग टोटे में बैठे हुए भी नजर आ रहै होंगे और काफी रोड पर टहलते हुए लोग नजर आ रहा है।